यहां पर हमें एक रिसेप्शन का बोर्ड दिख रहा हे ।

पार्क में लाल रंग के फूल लगे हुए हैं।

कई सारी कुर्सियां और कई सारे टेबिल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक बड़ा सा कॉलेज नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक कैफे नजर आ रहा है कैफे के बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।